जैसे कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे एक बड़ी-सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जैसे कि मैं देख सकती हूँ मुझे लाइवेरी दिखाई दे रही है उसमें कुछ बुक्स रखी हैं--

और मुझे कुछ पंखियाँ भी दिख रही हैं कुर्सी भी दिख रही हैं बर्तन माँज लाओ।

और कुछ पब्लिक भी है बड़े-बड़े अक्षरों में मुझ--

और यहाँ पे टॉर्च भी बिची है।

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है पेट्रोल भरा रहा रहा है गाड़ियों में।

जैसे कि मैं देख सकती हूँ मुझे यहाँ पे बिल्डिंग दिखाई दे रही है और कुछ चिल्ड्रेनस वगैरह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे।

और मुझे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रा हैं।

और कुछ खरीदने के लिए आए हैं कुछ बेचने के लिए आए हैं मुझे कुछ बड़े बड़े अक्षरों में कुछ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बड़े-बड़े अक्षरों में कुछ न अ लिखा हुआ है यहाँ पे चद्दर सेट हैं।

जैसे कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे मुझे ए एक लेडिज़ दिख रही हुई है दुल्हन के जोड़े में--

बाजार है। यहां पे ग्राहक सामान ले रहे है। यहां पे एक टेबिल भी रखा है। पेड़ पौधे भी है। यहां पे कुछ बड़े-बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ भी है।

जैसे कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे मुझे मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही ए यहाँ पे टेबिल है यहाँ पे केरम खेल रहे हैं।